यहां पर कुछ गाड़ी के धोने वगैरा के शैंपू रखे हुए हैं।

जो अंदर एक कमरा है वहां पे एक चेयर रखी हुई है और एक--

बाल्टी रखी हुई है और यह प्लास्टिक से बना हुआ है जो बाहर की ये होल पर लगा हुआ है।

यहां पर ऑलमोस्ट तीन गाड़िया दिख रही है जिसके घर के--

यहां पर कुछ पेड़ पौधे रखे हुए हैं और उसके ऊपर एक टीन का छप्पर पड़ा हुआ है।

उससे इधर एक और मेज रखी हुई है उससे साइड कुछ गमले है जो सजाया गया है।

यह एक बैडमिंटन खेलने की जगह है दो आदमी उस साइड खड़े है दो आदमी इस साइड ।

यह एक बड़ा घर है जहां पर दो कार हैं पीछे एक कार एक काले रंग की है।

यहां पर बहोत सारे सफेद और पीले रंग के झंडे लगे हुए हैं।

एक एल_जी कंपनी में एक एल_सी_डी की दुकाने है है जहां पर बहोत सारे एल_सी_डी रखे हुए है शायद इन दुकानों पर एल_सी_डी बेची जाती है।